यहां पर एक लड़की एक लड़का पहाड़ का बीच मे घूमने आया है।

लड़का टोपी लगे रखा है लड़की चश्मा पहन रखी है |

ए गो किताब का दुकान दिखाई दे रहा है इसमें बहुत सारा किताब है।